रखा हुआ है एयरटेल का डिश वाला है।

एक पूरा पॉट है उसमें एक ब्लू रंग का फूल है व्हाइट रंग का फूल है येलो रंग का फूल है फिर इधर एक थोड़ा सा मिट्टी है।

दरवाजा है इधर एक अ टेबल टाइप का रखा हुआ है इधर एक आदमी बैठे हुएं हैं।

आयरन आयरन के अंदर में रखे हुए है वी_एस कंपनी का है फिर येलो ब्लैक लू रेड ग्रीन --

जितने भी अलग अलग टाइप के बॉल सभी--

बंधन विवाह बिल्डिंग का नाम है उसमें बहोत सारे शीशे लगे हुए है मिरर लगे हुए है ब्लू कलर का मिरर है व्हाइट कलर पेंट है।

रेड कलर का ब्लू कलर का पता नहीं किस कलर का दीवाल है मुकेश--

पिक्चर है पीछे में एक दीवाल है फिर कोका कोला का स्टैंड पूरा रखा हुआ है फिर फंटा है फिर रेड कलर का एक--

गांव में इनके स्कूल है जिसका नाम राजक्रिय--